फॉर्मल कपड़े पहेन रखे है चश्मा लगा रखा है और उसके हाथ में एक पेपर --

इस तस्वीर में एक नदी बह रही है पीछे काफी सारे पहाड़ है और उन पे पेड़ पौधे भी लगे हुए है। एक नाव है जो की साईड में न-नदी के किनारे--

तस्वीर में एक ब्रिज नजर आ रहा है जो को ब्लेक एंड वाईट कलर का पुता हुआ है पीछे एक नदी बेह के जा रही है एक आदमी यहा पर खड़ा हुआ है।